इस कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

ये एक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है।

कुर्सियों में कपड़ा भी चढ़ा हुआ है।

इसमें चारों तरफ एक चबूतरा भी दिख रहा है।

यह एक मंदिर प्रांगण की तस्वीर है इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ ड्रॉवर्स भी दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

इसमें बहुत सारे रैक भी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी दिख रही है।

इसमें साइड साइड में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसमें एक छोटी सी मूर्ति भी बनी हुई हैं।

इसमें लोहे की बाउंड्री भी दिख रही है।

इसके पीछे एक बहुत ही ऊंची इमारत दिख रही है।

इसके किनारे में एक बहुत बड़ी पिलर भी दिख रही है।

ये दुकान जनरल स्टोर बाई स्टेशनरी की है।

इस पार्क में एक बहुत बड़ा पोस्टर दिख रहा है।

इसके नीचे छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारी पिलर भी दिख रही हैं।

इसके किनारे में सूखी घासें भी बहुत पड़ी हुई हैं।

गेट में बहुत बड़ा पोस्टर दिख रहा है।

इसके अंदर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिख रही हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ रेवड़िया भी दिख रही है।